औ दिल्ली में आ घूम आते --

औ बराबर में यार सड़क भी जा रही है इसके।

और यार मैं अपने खेत पे यार खेत जितवाता यार हल से --

अबे यार चल पार्क में चलने या घूमने यार।

भाई यार कितना अच्छा मकान है यार ये और इसके आसपास इलाका कितना अच्छा लग रहा भाई।

और लोग बाग है तो क्रिकेट भी खेलने हैं यार बड़ा मजा आता होगा भाई क्रिकेट खेलने में और काफी लंबी चौड़ी जगह है आसपास घर भी है और --

कितना अच्छा शॉप लग रहा है भाई।

यार ये तो यार दुकान है बुकसेलर की।

कित्ती बढियां दुकान है यार ये फल फरुटों की यार।

हाँ यार वो यार है भी नहीं।

ए यार देखते हैं। हम भी चलते हैं होटल में। देख कैसा होटल अन्दर से। बढियां लग रहा है होटल बाहर से तो।

अबे यार ये कितना बड़ा ग्राउंड है यार कितने सारे बच्चे खेल रहे हैं यार इसमें यार।

और यार साफ सफाई भी अच्छी है यार प्लेट भी कितनी अच्छी है यार।

और कितने वी.आई.पी. पेड़ हैं भाई।

अबे यार ये तो कार है यार ये मेरे ख्याल से यार दूल मिट्टी साफ कर रहा है यार यार।

और आसपास ये खम्भे भी पड़े हैं भाई। ए यार मेरे ख्याल से खम्भे गड़ते दिखे हैं यार।

और यार ये ब्लू वाली तो कितनी अच्छी लग रही है बुलेट यार मेरे को भी लानी थी यार बुलेट यार।

और रैकेट से खेलने वाली चूड़िया रखी है और कॉस्को की बाॅल रखी हैं जूते रखे हैं यार। कितनी अच्छी दुकान लग रही है यार ये।

कितनी अच्छी मंडी है यार। मिर्चे भी ले लेंगे यार। सही लग रही हैं।

और प्याज भी यार। कितनी बढियां लग रही है यार।

यार चल ले भी लेंगे हम मैगी भी भूख भी लग रही है यार मैगी भी बना लेंगे यार लेके।